यहाँ पे एक स्कूल का बरामदा है और इस बरामदे में बहुत सारे बच्चें ड्रेस पहिने पेन्टिंग बना रहे है। .

यहाँ पर एक मछली दुकान का दुकान है और यहाँ पर दो-दो लोग मछली काट रहे है।

कोंई एक बन्दा बैठा है और इधर शीशा का गिलास है जोकि इसमें कुछ ड्रिंक्स है और दीवार में बोर्ड भी ल--